यह एक शादी करने की जगह है जिसमें काफी सारे फूल लगे हैं और बगल में पीले कलर की पट्टी है जिसमें जाली टिकी --

एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ है जो उसके पीछे हरा घास टाइप की लगी हुई है जिसमें काफी पेड़ लगे हैं।

और पानी की सटक है और काफी बड़ी दीवाल है जिसमें फाटक जुड़ा हुआ है | यह एक हौंडा कंपनी की मोटरसाइकिल है जो पुराने मॉडल की है।

लाइटों का कलर लाल हरी नीला रात का मौसम है।

यह एक बोहोत बड़ा फाटक जैसा गेट है और पेड़ है और काफी घर है।

यह एक मंदिर है इसमे बोहत सारी भीड़ है जिसमें औरते बूढ़े बच्चे आदमी सब लोग हैं और यह एक बड़ी नदी है।